बच्चों ने रेड कलर की शर्टे पहेनी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे ए_सी भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।